पूरा है नीचे ईंटा बैठा हुआ है छत का मकान है पीछे दो तार है तार का पेड़ है ए --

इण्डिया लिखा हुआ है मंत्रीयालय लिखा हुआ है आ-- पी_आई_टी लिखा हुआ है आई_टी_आई लिखा हुआ है म--

और इसमें एक रास्ता भी नहीं दिख रहा है ये बिल्कुल प्ले--

हरा कलर के उजला कलर के पीला कलर के तीन तल्ला मकान हाई नीचे टाइल्स - वाइल्स लगल हाई कुर्सी लगल हाई।

एक दुकान हैय बड़ा सुन्दर है एमे लाल पीयर शर्ट लगल हैय जीन्स लगल हैय टी-शर्ट लगल हैय काउंटर है एगो शीशा एगो लकड़ी के टाइल्स लगल हैय नीचे ऊपर पीला कलर के टाइल्स लगल है लाइट फाइट लगल है।

हरा कलर से बहुत आएगा घास वास है जोरा पर मूर्ति बनल है सीडी बनल है पीछे मकान मकान है आदमी है रोड है दो-तीनगो आदमी है पीला कलर से दीवाल पेंट हॉल है फूल लगावल है।

हई ग्रील हई सीढ़ी बनावल-- ईटा धरल हई फूल लगवाइल हई।